हेलो गाइस जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं एक जेन्स और एक लेडीस | उनके पीछे आप देख सकते हैं एक रेलिंग बनी हुई पीछे आप देखेंगे।

हेलो गाइस जेसा की आप यहा पे देख सकते है यहा पे बोहोत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक बोहोत बड़ी सी गाड़ी दिखाई दे रही होंगी गाड़ी के ऊपर भी कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे।

गाड़ी मे फ्लॉवर का डेकोरैशन किया गया है कुछ पेड़-पोधे भी दिखाई दे कुछ सुखी डालिया दिखाई दे रही --

फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं आपके सामने भी कुछ कुछ लोग भी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। टेंट का कलर बहोत ही खूबसूरत सा पिंक व्हाइट और ऑरेंज कलर का है। सामने भी आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।